साइड में दो बड़े-बड़े दिकची रही है। डब्बे दिख रहे है काले और ब्लू रंग के चेयरे दिख रही हैं पोस्टर वगेरा दिख रहे है दूर में जाली दिख रही है साइड में रौशनी भी आ रही है।

एक आदमी जो कि मास्क लगा के खड़ा है सामने में |

एक सामने में लाल रंग की टेबल भी है सामने में एक टीचर खड़ी है बच्चे लोग मास्क लगा के बैठे हुए है ऊपर पंखा साइड में लाइट वगेरा लगी हुई हैं ।